हल्का सा लाल है इस इमारत की कुछ खिड़कियाँ भी --

कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं | इन पौधो के किनारे पे कुछ --

शिनाव केस में कुछ वृक्ष लगे हैं।

भवन के समीप दो पहिये वाले वाहन भी है।

इस दृश्य में एक कृषि क्षेत्र देखा जा सकता है।

एक भवन देखा जा सकता है।

भवन के समीप कुछ औरतें भी --

कुछ लकड़ियाँ भी कटे हैं |